यह एक वाटरपार्क झूला है ।

ये मछलियों का बाज़ार है जहाँ पे हर प्रकार की मछलियाँ तरह-तरह की मछलियाँ मिलती है और ये चाचा मछली --

ये एक छत का जाल बनाया गया है जहां पे अभी छत ढलाई की जाएगी अभी सिर्फ यहाँ पे छत में याने शटरिंग लगा कर सरिया बिछाई गयी है और इसमें बहोत बड़ी छत है ये मुझे लग रहा है।